ए.टी.एम मशीन है बगल मैं डस्टबिन दिख रहा हैं झाड़ू है बगल मैं लोक लगा हुआ है ताला दिख रहे है कुण्डी दिख रहे है दिवार दिख रही है।

कुछ कलाकारी बनायीं गयी है पॉलीथिन है।